इंसान एक गोरा आदमी है।

बैंक का सामने एक ए_टी_एम भी है।

दुकानदारों ने वेट नापने की मशीन भी साथ में रखा है।

ये चित्र में एक बड़ा सा मैदान और पेड़ पौधे दिखाया गया है।

घर की छत टीना से बना है।

सीलिंग पर तीन लाइट बल्ब हैं।

दुकान का ऊपर साजु कांप्लेक्स लिखा हुआ है।

दूर में सूरज भी डूबता हुआ दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में वाटर पार्क दिखाया गया है।

वातर पार्क का फ्लोर ताइल्स से बना हुआ है।

इंसान ये खूबसूरत नजारा का एंजॉय कर रहा है।

और एक आदमी अपना मोबाइल से फोटो खींच रहा है।

इसमें बहुत बड़ा सा पेड़ भी है।

सीलिंग पर बहोत सारा बल्ब है।

इस चित्र में एक स्कूल बिल्डिंग को दिखाया है।

पत्तियां परफ्यूनिक्स लिखा हुआ है।

इस चित्र में एक स्विमिंग पूल को दिखाया गया है।

इस पार्क में बहुत सारा फूल है।

इस चित्र में बहुत बड़ा जहाज को दिखाया गया है।